इस इमेज मे यहां पे बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है और आस पास देखियेगा सोफा और टेबल दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर काफी सारे फलों की--

गेट के पास दो व्यक्ति दिखे हैं खड़े हुए।

और यहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति जिन्होंने ऑरेज ऑरेंज कुर्ता और सफेद धोती पहनी है --

और एक लड़का एक्सरसाइज करता हुआ नजर आ रहा है।

और नीचे दो गाड़ियां खड़ी है कार --

फूल दिखाई दे रहे हैं रखे हुए बहुत सारे।

जिसका बड़ा सा गेट भी है उसके ऊपर श्री पंचायती धर्मशाला लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में देखिएगा जहां पर झूला दिखाई दे रहा हैं।

और आसपास कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

उसके अंदर दो पंछी बैठे तरह नजर आ रहे हैं।